इस इमेज में हमें रोड दिख रहा है तीन कार खड़ी हुई है एक वाइट कलर बीच में एक ब्लैक कलर की कार और फर्स्ट साइड ग्रे कलर कार है यहां पर दो अंकल खड़े हैं। जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।